हमे यहा पे मैदान मे हरी-हरी घास लगी हुई दिखाई दे रही है और बगल मे कुछ गिरा हुआ है और गाड़िया आती-जाती नज़र आ रही है बहुत सारी --

हमे यहाँ पे एक स्टेडिअम दिखाई दे रहा है जहा की ग्राउंड मे हरी-हरी घासे दिखाई दे रही है छोटी-छोटी सी इस स्टेडिअम की चारो और कुर्सियाँ लगी--

यहाँ पे एक गेट दिखाई दे रहा है जिसमे काले रंग की शटर दिखाई दे रही है लाइट दिखाई दे रही है दीवार दिखाई दे रहा है और टेबल चेअर दिखाई दे रही है अंदर की ओर।